-- ऐसा कुछ है ऊपर अ फूल-ऊल नहीं है बट बहुत कुछ दिखाई दे रहा हैं दो ठो खिड़की भी है पानी उनी सब है।

ये देखिए दोस्तो ये देखिए एक दुकान है दुकान पे लिखा हुआ है ऊपर रेड कलर का लोकवाणी केंद्र लिखा हुआ है एक रेंजेस साइकिल है रेंजर साइकिल रेड कलर का दो कुर्सियां रखा हुआ है एक टेबल है।

तालाब है पीछे देखिये घर उर दिखाया जा रहा है बड़ा - बड़ा घर है हरा - भरा देखिये जंगल - वंगल दिखाया जा रहा है अ पेड़ - पौधा बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है येल्लो कलर का बोट हैं।

की देखिए एक सी_सी कैमरा भी लगा हुआ है और बैंक ऑफ बड़ौदा भी लिखा गया है और--